और यहां पर दूर पर बोहोत बड़े-बड़े से घने वृक्ष भी लगे। किनारे की तरफ एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और बोहोत सारे पटरों का ढेर रखा हुआ है और बोहोत सारे ईंटे भी पड़े हुए दिख रहे हैं।

किनारे की तरफ देखिए एक ढालदार जीना जैसा बना है और यहाँ पर बहौत बड़ा सा मैंदान है मैंदान में घास लगी हुई है दूर पर बड़े-बड़े से पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं मैंदान के पास से एक चौड़ी सी रास्ता बनी हुई दिख रही है।

और उसमें बोहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं। यहां पर काउंटर रखे हुए हैं। बोहोत सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे --

जिसमें हम देख पा रहे हे ये एक मेडिकल स्टोर है। यहाँ पर एक काउंटर रखा हुआ है काउंटर के ऊपर बैनर लगा है जिस पर लिखा है बदायूं मेडिकल स्टोर ।

और दो आदमी भी खड़े हुए हैं एक फ्रिज रखी है उसके ऊपर भी दवाइयां रखी हैं लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए ये काउंटर बना हुआ है और ऊपर की तरफ बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने एक चैनल लगा है यहाँ पर कुछ आदमी और कुछ औरते दिखाई दे रही हैं।

लड़कों के पास चार्ट रखा हुआ है एक बेंच पर एक अध्यापिका भी बैठी हुई दिखाई दे रही है अध्यापिका ने साड़ी पहनी हुई है।

दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक बोहोत बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग बनी हुई है। जहां पर देखिए मेदलाया लिखा हुआ है और यहां नीचे की तरफ बोहोत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग में ऊपर की तरफ पूरे में शीशे लगे हुए हैं।

आ कि इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं ये एक मेकअप स्टूडियो का दृश्य है। यहाँ पर देखिए सामने की तरफ काले रंग की कुर्सियां पड़ी वी हैं। एक लड़की बैठी है जिसके ऊपर सफेद रंग का एक --

दो मेंढक के मुंह बने हुए दिखाई दे रहे हैं। झूले पर बहुत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक आदमी खड़े हुए हैं जो कि बच्चे को पकड़े हुए हैं। झूले के पीछे की तरफ बहुत घने से पेड़ भी लगे हुए हैं।

इसमें हम देख पा रहे हैं ये एक शादी का लॉन है। यहाँ पर देखिए पेड़ों में लाइटे लगी हुई है। यहाँ पर सुंदर सी लाइटों से पेड़ों को सजाया हुआ है किनारे की तरफ कियारिया बनी है जिसमें घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिये ये एक इमारत बनी हुई है। जिसमें दर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सीढ़ियां भी है। सीढ़िओ पर देखिए कुछ औरतें खड़ी हुई है। सभी औरतों ने साड़ियां पहनी है।

में हम देख पा रहे हैं किसी अस्पताल का दृश्य है। यहाँ पर देखिए सामने की तरफ एक कमरा बना वा है ऊपर लिखा वा है पुरुष वार्ड सोलह वार्ड ।

उस पर लिखा हुआ है इंडियन ऑयल और दो खजूर के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं दूसरे किनारे पर भी एक खजूर का पेड़ है और बीच में रास्ता दिखाई दे रही है।

लड़कियां हैं जो कि योगा करते हुए दिखाई दे रही हैं सभी लड़कियों ने उल्टा लेटी हुई हैं और अपने पैरों को दोनों हाथों को पीछे करके पकड़ा हुआ है।

तराजू भी रखा है। एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बोहोत सारे सेब संतरे अनार तरबूज केले पपीते अंगूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दो लड़के खड़े हुए हैं। दोनों ने बैग पकड़ा हुआ है।